सामने एक बिल्डिंग है उसका नाम कृष्णा दरभंगा हॉस्पिटल है।

यहा पर कपड़ों की मेंथ भी है रॉकी शोरूम है वहां पर कुछ जींस पेंट भी रखे हुए हैं।